इसमें एक बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसमे एक फैंन भी दिखाई दे रहा है और कुछ कांच के स्लैब बने हुए हैं।

इस चित्र में हमें बहुत सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

नीचे एक लाल कलर का पायदान भी पड़ा हुआ है।

इनकी बराबर साइड में एक बैनर भी लगा हुआ है।

मकान के ऊपर कुछ पानी के टैंक भी रखे हुए हैं।

जिसका सराहना बना हुआ है और इसके पीछे की साइड में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है।

यहाँ पर कुछ चील भी उड़ रही है।

जो कि माइक पर बोल रही है उसका मुँह ब्लर कर रखा है।

लकड़ी के बॉक्स में कुछ किताबें रखी हुई हैं। कुछ कॉपी रखी हुई है।

इनके सामने तीन आदमी खड़े हुए हैं जिनका मुंह ब्लर कर रखा है।